यहाँ एक पहाड़ी रास्ता है यहाँ कम्पिले रास्ते दिखाई दे रहे है इस गाँव इस पहाड़ के चारो तरफ पेड़-पौधे लगे हुए है यहाँ लोग घूमने जाते है|